ट्रैक्टर के कलर नीले हरे एवं नीले हरे ही लग रहे हैं।

ट्रक के दो चार छ आठ दस पहिए नजर आ रहे हैं।

तीन व्यक्ति नजर आ रहे हैं दो बेचने वालेएक खरीद करने वाले।

यह एक नदी का तस्वीर लग रहा है जो कि रोड के किनारे से जा रहा है।

चार्जिंग के लिए चार्जिंग केबल लाइट ए_सी --

डस्टबिन भी दी गई है और यहां टाइल्स लगा हुआ है।

रंग बिरंगे कपड़े हैं। तीन खेप है जो कि लाल बूलू पीला नीला हरा --

इस चित्र में एक सीढ़ी दिख रहा है जोकि दो रूमों को जोड़ रहा है।

जिसमें हरे कलर का एक बैनर है जो कि खाना का डिश वाला लगा हुआ है।

पर नीचे ला लाल कलर का फर्श दिख रहा है।

यहां इस चित्र में एक बड़ा सा मंदिर जैसा लग रहा है।

यह एक घर का चित्र है।

सूर्य देव चमक रहे है पानी में इनकी अच्छी सी प्रतिमा आ रही है।

इस चित्र में बहोत सारे मोमबत्ती जल रहे हैं।

यह चित्र जो है कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए है।

और बहुत सारे आदमी उतर भी रहे हैं।

जहाँ की पीछे में एक बहुत बड़ा फोटो है।

एक बड़ा सा गेट दिख रहा है जिसमें लक्ष्मी ग्रेंड कुछ करके लिखा हुआ है।

बहोत सारे श्रदालू यहाँ पे दिख रहे हैं।

और नीचे बड़ों का साईकिल है। बड़ों का कलर का साईकिल है।

रेड है ऑरेंज है हल्के नीले रंग का है।

यह एक समुद्र का चित्र है जहां की चारों ओर से पानी ही पानी दिख रहा है।

बैनर का कलर सफेद है इसमें सफेद नीला पीला लिखा हुआ है एक एरो भी दिया गया है।

एक रोड के किनारे दो बाइक लगा हुआ है दो बाइक और लगा है जो की ढका हुआ हैं।

रोड के किनारे बहुत से घर है पेड़ दिख रहा है।